यह एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है यह दुकान बहुत ही बड़ी है यहाँ पंखेआयरन --

ऑटो में बैठ रहे है ।

एक लड़का सफेद गंजी जूता पहने दोनों पैर को उठा के बैठे हुए है और दूसरा आदमी एक पैर को उठाए हुए --

यह एक मैदान है यह मैदान काफ़ी हरे-भरे दिखते हैं यहाँ कोई फसल लगाया गया है।